और वहां पे बहोत दो पंखे लगे हुए हैं और सफेद लाइट भी दिखाई गई हैं।

और बहुत सारे वैरियम भी दिखाई दे रहे हैं। बे --

घ-घर दिखाई दे रहा है जो कि दरवाजा भी है।

ये चित्र में हम एक समुंदर देख हैं और बहुत सारे टावर भी दिखाए गए हैं।

इस चित्र मे हमे चार मशीने दिखाई गई है और उसके बाजू मे नीले कलर के टोकरिया भी दिखाई गई है और बहुत सारे कपड़े भी पड़े हुए है।

चित्र में हमें नीला आसमान और सफेद बादले दिखाई दे रहे हैं जो कि सूरज की रोशनी भी --

कार गई है जो सफेद रंग के है और बहुत सारे बिल्डिंगे भी है जहां बहुत सारी खिड़किया और लाइटे भी चमक रही हैं।